ये एक बहोत बड़ा मैदान या पार्क हैं।

यह एक बहोत बड़ी नदी दी बताई जा रही है उसके आस पास पेड़ पौधे भी लगे हुए है और ये नजारा --

जिस में भी दिखाई दे रहा है और उसके आसपास में बहुत--

ये एक धर्मशाला है यहां पर खुप सारे पंडित लोग बैठे हुए हैं वो वहां पे आशीर्वाद दे रहे हैं और उन्होंने ऑरेंज --

और राधे राधे गेस्ट हाउस भी है यहां पे ए_सी रूम और नेन नॉन ए_सी रूम भी अवेलेबल है।

बड़ी मूर्ति लगी हुई है और साथ में गुब्बारे वाला भी है बाहर गुब्बारे वाला खड़ा हुआ --

किताबें कॉपियां मिलती है पेन पेंसिल वगैरा मिलती है और एन_सी_ई_आर_टी आर_बी_सी किताबें भी यहां पर मिलती --

ये एयरपोर्ट सांगानेर डाकघर का पोस्ट ऑफिस पे है भारतीय डाक ये बहोत बड़ा बना रखा है और --

यह रोबोट रेस्टोरेंट है यहां पर र ये खाना ये कार्टून रोबोट है वो लेकर आता है।

ये दिन का नजारा दिखाई दे रहा है।

बॉमिट रोसर के नाम से ये दुकान है उसके बाहर एक कार भी खड़ी हुई है।

ये एक लड़का है वो पुलिया पे खड़ा हुआ है उसने गुलाबी रंग की और नीली रंग की जींस पहन रखी है और हाथ में --

लिख रखा है और उसके आसपास में पेड़ पौधे लगे हुए हैं और एक बाहर आंटी जी खड़ी हुई उसने पीले रंग की साड़ी पहन रखी है।

मिठाई वगैरा और स्नैक्स वगैरा भी रखे हुए हैं नींबू भी है और दो चम्मच है एक तो काटे वाली स्नैक्स हैं और एक स्पून वैसे हैं।